नमस्कार ! installation of libreoffice suite पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम windows os में libreoffice suite संस्थापित करने के बारे में सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
अब लिबरे ऑफिस suite के संस्थापन के साथ शुरू करते हैं
पहले मैं फायरफ़ॉक्स web browser खोलूँगी
address bar में type करें: www libreoffice org/download और enter दबाएं
हम तुरंत ही download पेज पर निर्देशित किये जायेंगे
यहाँ आप libreoffice suite को download करने के लिए download button देख सकते हैं
default रूप से यहाँ हमारे os का नवीनतम version दिखता है
मेरी स्थिति में मैं windows os पर recording कर रही हूँ इसलिए यह windows के लिए libreoffice का नवीनतम version दिखाता है
लेकिन हम अपने os version के लिए उपयुक्त इस सॉफ्टवेयर को download कर सकते हैं
how लिबरे ऑफिस version के लिए os को कैसे बदलते हैं download button के बिल्कुल ऊपर स्थित link change पर os click करें
हम एक अन्य पेज पर निर्देशित किये जायेंगे यहाँ हम अपनी ज़रुरत के अनुसार भिन्न os के लिए download विकल्प देख सकते हैं
यहाँ हम libreoffice suite का जो version संस्थापित करना चाहते हैं वो भी चुन सकते हैं
मैं windows चुनूँगी
यह करने पर हम एक बार फिर download पेज पर निर्देशित किये जायेंगे
ध्यान दें कि अब libreoffice और os का default version हमारे चुनाव के अनुसार है
अब download button पर click करें
as करने पर एक save as dialog box खुलता है
save button पर click करें और download शुरू होगा यह internet की speed के आधार पर कुछ समय ले सकता है
जब downloading ख़त्म हो जाती है तो downloads folder पर जाएँ double libreoffice setup अप file पर double click करें
एक dialog box खुलता है और पूछता है do you want to run this file
अब installation wizard खुलेगा next button पर click करें जब भी पूछा जाये
अब यह पूछेगा कि आप typical या custom संस्थापन में से क्या चाहते हैं default रूप से typical चयनित है next बटन पर click करें
फिर install button पर click करें संस्थापन कुछ समय लेगा
एक बार संस्थापन पूरा हो जाने पर finish पर click करें
अब जाँचते हैं कि क्या लिबरे ऑफिस ठीक से संस्थापित हुआ है या नहीं
start menu पर जाएँ → all programs और libreoffice 44
आप अनेक लिबरे ऑफिस suite components देखेंगे जैंसेbase calc draw impress math और writer
यह दिखाता है कि आपके windows system पर libreoffice suite सफलतापूर्वक संस्थापित हो गया है
इस tutorial के लिए इतना ही इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने windows os में libreoffice suite संस्थापित करने के बारे में सीखा
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online tests पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकरी के लिए कृपया हमें लिखें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
iit iit the बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ इस tutorial को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद